जो अंदर जो अभी है वो गोल्डन कलर में ज्यादा दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है।

यहां पे थोड़े लड़-लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट यहां पे सजावट हो रही है स-थ-अ पोल्स को ये लोग --

बैलूंस लगा रहे हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कुछ बात कर--

इस फोटो में ग्यारह जाने हैं ग्यारह में से दस योगा कर रहे हैं और एक जो ऑरेंज कुर्ती और वाइट पैंट में है वो बीच में चल रहे हैं।